यह एक बिल्डिंग बना हुआ है यहां रोड साइड दिख रहा है और हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं नीचे में बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर बादल छाए हुए हैं।